इस क्षेत्र में एयरप्लेन दिखाई दे रहे हैं।

है और कुछ बिल्डिंग भी दिख रही--

यह एक दुकान का चित्र है दुकान में पीले रंग का--

अं लैपटॉप भी दिखाई दे रहा हैं।

और कुछ शो पीस भी रखे हुए--

हॉल के गेट कांच के हैं कांच पे--

पास में दुकान भी दिखाएं दे रहे हैं।

कुछ कार्टूंस में सामान भी बाहर ही रखा हुआ--

और कुछ पक्षी भी अंदर दिख रहे हैं।

दिख रहे है और पानी भी दिख रहा है।

कुछ स्कूल के विद्यार्थी दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ दिख रहा है।

उसके पीछे रैक में बहुत सारे कॉपी किताबें रखी हुई दिख रही हैं।

जिस पर काम चल रहा है।

लकड़ियों के पटिए भी रखे हुए हैं।

और पास में दुकान भी है जिसमें बहोत सारी सफेद--

पूरी तरीके से अपने आप को कवर कर रखा है।

और नाइट लैंप भी बड़े-बड़े रखे हुए हैं।